उसके उपर ओनिडा टाटा स्काई का भी बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक चर्च है चर्च में यहाँ पर फादर है।